इमारत के ऊपर तिरंगी मालाओं की सजावट नजर आ रही है पीछे एक गाड़ी भी खड़ी हुई दिख रही है।

इस चित्र मे एक मैदान नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ औरतें सर पर घड़े रख के जा रही है।

सामने एक लाल कार्पेट भी दिख रहा है मैदान के पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

एक गाड़ी नजर आ रही है पीछे एक विज्ञापन भी लगा हुआ दिख रहा है होटल के ऊपर बड़ी-बड़ी लाइटें लगी हुई दिख रही है सामने एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

पर बहोत सारी यात्री अपने सामन के सात नज़र आ रहे है स्टेशन पर सुन्दर सुन्दर चित्र भी लगे हुए दिख रहे है सामने बड़े-बड़े विज्ञापन भी दिखाई दे रहे--

इस चित्र में एक रोड नजर आ रहा है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।